मंदिर आम घाट गाजीपुर में है और यहाँ पे कुत्ते दिखाई- कुत्ते सोये दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कचहरी है और यहाँ पे लोगो को न्याय मिलता है।

और स्वीटिंग पूल पे कुछ आदमी घूमते हुए नहाते हुए तैरते हुए नज़र आ रहा हैं।